यहाँ पे लोग अपना जो बैंकों में जमा पूंजी होती है और उसको यहाँ से निकाल सकते हैं।

है। तोते जंगल मे रहते हैं | ये लोगों की आवाज़ मे भी बातें कर लेते हैं।

ये आज के दौर पर बहुत ही ज्यादा जरुरी है। हाईवे --